लोग इसी तरह से अपनी गाड़ी को सेफ रखते है। इसमे अपका गाड़ी सेव रहता --

अभी ये लग रहा है की ये नया रोड बना हुआ है और हमारे भारत में ऐसे रोड आपको बहुत जगह देखने के लिए मिलेगा।